यहां पर फूलों की दुकान है दो तीन आदमी बैठे हुए हैं और यहां पर--

और एक आदमी नीचे बैठा हुआ है सामने चार विंडो ए_सी भी लगे हुए हैं।